सामने मुझे तीन का शेड दिखाई दे रहा है और ऊपर भी तीन का शेड दिख रहा है।

और बलून लगे हुए है रेड ब्लैक येलो कलर में--

आस-पास पेड़ नज़र आ रहे हैं और ऊपर बिजली का वायर नज़र आ रहा है।

यहाँ पर मुझे दो लोग दिखाई दे रहे है और स्टेयर्स दिखाई दे रही है कुछ लोग स्टेयर्स पे बैठे हैं ।

कैफ़े लिखा हुआ है।

यहाँ पर मुझे एक झोपडी नजर आ रही है झोपडी के सामने कुछ लोग नजर आ रहे है झोपडी में तीन लकड़ी नजर आ रही है नीचे लगी हुई झोपडी पर और--

यहाँ पर मुझे नदी दिखाई दे रही है नदी में मुझे टीज दिखाई दे रही है।

यहाँ मुझे रोड नज़र आ रही है रोड में मुझे एक बस दिखाई दे रही है एक कार नज़र आ रही है।

कुछ येलो फुल दिखाई दे रहे है कुछ वाइट फुल दिखाई दे रहे है और केरेट दिखाई दे रहे है जिसमे वाइट फुल नज़र आ रहे है।

और एक टायर दिखाई दे रहा है जिसमे येलो कलर है और एक बैठने के लिए चेयर दिखाई दे रही है वाइट कलर की।